और बहोत सारे वैज्ञानिकों और साइंटिस्टों की यहां फोटो लगी हुई पंपलेट लगे हुए हैं।

यहां पे छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं और यहां पे घास भी दिखाई दे रही है जो बहुत सुंदर लग रही है।

यहां पे ट्रेन जा रही है और यहां पे बहोत सारे लोग भी हैं जो चढ़ते उतरते दिख --

पेड़ पौधे लगे हुए हैं और यहां पे खंभे लगे हुए हैं और कोई दिखाई नहीं दे रहा है।

यहां पे बहोत सारे लोग खाना खाने के लिए पिज़्ज़ा खाने के लिए आए हुए हैं कांच का गेट लगा हुआ है बाहर।

यह एक लड़के की फोटो है ये--

पे पुल सा बना हुआ है रंगीन कलर की धारियां लगी हुई है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है इस लड़के का --

जलेबी और कड़ाई है कड़ाई ब्लैक कलर की है और यह स्टील की प्लेट पे रखी हुई जलेबी है।

इस के ऊपर पट्टी बनाई गई है बैठने के लिए और यहां आस पास सीमेंट के घर बने हुए हैं और कोई भी दिखाई नहीं दे --

पे ए मंदिर बना हुआ है शेरावाली माता का--

यह एक सड़क बनी हुई है यहां पे आस पास बहोत सारे घर बने हुए हैं पेड़ पौधे लगे हुए हैं पंपलेट लगे हुए हैं।

यहां पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और एक घर बना हुआ है जहां पे विंडो लगी हुई है सीमेंट का ऊपर से बना हुआ है।

यहां पे बहोत सारी बाईकें खड़ी हैं सीढ़ियों से उतर के चप्पल और भी र ख पड़ी हुई है।

यहां पे बहोत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है और डिजाइने की गई है ग्रीन कलर की घास है।

यह एक स्कूल की फोटो है यह कांच में देखके सेल्फी खींचता हुआ दिखाई दे रहा है।

और एक लड़का है जिसने इयर फोन डाल रखा है एक लड़का है जो चने की दाल और बेच रहा है यहां पे बहोत सारी लकड़ियां है नाव है।

जोश ने और अलग कपड़े पहन रखे हैं सबने यहां पे उसने ऑरेंज कलर के पहन रखे हैं।

बराबर घास भी दिखाई दे रही है और यहां पे एक व्हाइट कलर की गाड़ी है येलो कलर की और भी --

पाइनएप्पल केला चीकू सारी सब्जियां रखी हुई है डस्टबिन है और यहां पे पानी की स्टील की बर्तल भरी हुई है।

यह मान सरोवर स्टेशनरी है हमारे यहां सभी प्रकार के कॉपी मलेरी रबर और पेंसिल सारी चीजें मिलती हैं।

का बना हुआ है यहां पे मुख्य अधीनता इंदिरा गांधी नहर परियोजना लिखा हुआ--